यहा बहुत ही अच्छू पेड़ है एक पेड़ एक जातर दर भी उन्होंने बहुत अच्छी डलाई है।

यहा एक साऊंड लगा हुआ है गाडी के उपर साऊंड है और आजूबाजू मे भोंगे लगी हुई है आ--

अ स्नान कर रहे है। एक आदमी पत्थर के ऊपर बैठा है। दो आदमी दो कमेरा की तरफ देख रहा है। एक आदमी चल रहा है।

का रोड है आजूबाजू की बहुत अच्छा परिसर है एक कुत्ता जा रहा है रोड से।